बाहर जो रिसेप्शन पे होता है मैनेजर उसके वहां की फोटो है।

बहोत अच्छा टाइम पास का जरिया है जो आज के लिए पार्क बन रहे हैं।

मुकत हॉस्पिटल मे हर बीमारी का इलाज होता है। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी आप--

और पीछे से एक आदमी ने इसको पकड़ रखा है इसको हम अपने टेबल पे या अपने किसी वॉल पे जहां हाइलाइट करना हो वहां लगा सकते हैं।

रखे हुए है रखे हुए है।

इसमे बच्चे डिसकस कर रहे है आपस में और टीचर भी बैठे हुए हैं यहा पे बच्चे कॉम्पटेटीव एग्जाम की तैयरी करते है।

और हरी मिर्च भी दिख रही है और लोग बहोत सारे खड़े है जो सब्जी खरीद रहे है।

फूलों की बनी हुई माला भी है और टोकरियों मे भी सामने फूल रखे हुए दिखाई दे रहें हैं।

बच्चे जाकर लाइब्रेरी में किताबें पढ़ते हैं वहीं पे ले लेते हैं और वहीं पे वापीस हमे उसे सबमिट करवा के--